सभी अलमारी पर बहोत सारे मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं।

नीचे सीमेंट का प्लास्तरा हुआ है।

बहुत सारे ब्लैक कलर के कुर्सियां है।

सड़क पर एक जानवर भी खड़ा है।

इस जंगल में एक खजूर का पेड़ है।

कुर्सियां प्लास्टिक के हैं।

नीचे जमीन पर टाइल्स भी लगी हुई हैं।

इस कमरे में बहुत सारी मशीने भी लगी हुई है।

मैदान के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है।

पेड़ की जड़ों में कलर किया हुआ है।

बाउंड्री के बाहर भी पेड़ लगे हुए हैं।

पंडाल कपड़ों और फूलों की मदद से सजा हुआ है।

और यहां पर फूलों का माला भी लटका हुआ है।

उसके हाथ में क्रीम कलर है।

नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

सेब है संतरा है अनार है केले हैं काले कलर के अंगूर हैं।

नीचे सीमेंट का फ्लस्तारा किया हुआ है।

अंदर बल्ब भी जल रही है।

इसके बाहर पाइप भी र-रखा हुआ है।

यह एक फर्नीचर दुकान का दृश्य--

दुकान के बाहर भी सोफा बना हुआ है लड़कियों का।

यह एक चर्च के बिल्डिंग का दृश्य है।

रूम में बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है दुकान की दीवार का कलर पर्पल है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग की दीवार का कलर वाइट --

बाउंड्री का कलर ब्लू और व्हाइट है इस पार्क के नीचे में बहुत छोटे छोटे घास भी लगे हुए हैं।

दुकान के सीलिंग में बल्ब लगे हुए है।

वस्तुएं का कलर अलग है।

इसके बगल में एक और क्रीम कलर का टेबल रखा हुआ था।